और वहां पर बहोत सारा सुंदर सी सजावट किया गया है वहां पर पर्दा लगाया हुआ है।

और वहां पर गाछ-वृछ भी है वहां पर लाइट भी लगा गया है और बहोत सुंदर लग रहा है दिखने में वहां का जगह।

जैसे की आप देख सकते हैं यहां पर एक नदी है जहां पर बहोत सारा बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ हैं।

व्हाइट है और हरा टाइप सा है।

यहां पर बहोत सारा साइकिल लगा हुआ है रेंजर साइकिल जो बहोत सुंदर लग रहा है।

उसके बगल में प्रिंटर है ब्लैक कलर का और चार्ज है वहां पर उसने कुछ--